एक आइसक्रीम का भी पिक्चर है और यह बाइक साइकिल कार ब लोग सभी भी थड़े है। एक पेड़ है।

यह एक मार्केट यह एक मार्केट का दृश्य है जहां टेम्पू बाइक साइकल --

और यहां पर एक रेलवे लाइन पर एक फैक्ट्री जैसे कुछ बना हुआ है और वहां पर एक जेंट्स और एक लेडिस है।

ये केक इतना अद्भुत है जो --

छोटा-सा कुछ घर जैसा बना हुआ --

यह एक फैक्ट्री का दृश्य है जिसमें --

किसी लेबर से उम्म धागों को पकड़ा के जमीन की नपाई कर रहे हैं और ये --

और इस उसके बाद इस में बहुत सारे लोग जिम करने भी आएंगे और अपना शरीर --

यह एक घर का फोटो है जो देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे --

और यह यह जेक यह इसके अंदर ए.सी. लाइटिंग और भी लाइटिंग वगैरा भी है।

यह एक आइस क्रीम की दुकान है जहाँ पे दो तीन लोग खड़े हैं ।

इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करते आ रहे हैं।

यह एक ब्रिज है जिस पे से गाड़ी गाड़ियाँ जाती है इस लोग भी जाते हैं यहाँ पे --

यह एक टेंपू है और बगल में साइकल लगा हुआ है अब इस टेंपू --

यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है लेकिन एक आदमी जो बैठे हुए हैं जो काफी स्टाइल में बैठे हुए हैं ।